यहाँ पे किसी व्यक्ति का घर नजर आ रहा है और यहाँ पे बहोत बड़ा घर है और यहाँ पे गाय का चारा नीचे में रखा गया है और यहाँ पे दो महल का घर है और ये पिंक कलर से कलर किया गया है ।